बच्चे बहोत ही सुंदर पेंटिंग बना रही है बच्ची एक लाइन बा कतार में है अनुशाशन में है।

यह एक तेल सयंत्र का कारखराम है का कारखाना है। लोग कार करते नजर आ रहे हैं। एक बच्चे ने कारखाने पे सेल्फी अपनी अपलोड की है।

की अंतर्गत है। कुछ बागगार है कुछ बजाने वाले है बड़ी आकृति की मछली है जो काफी सुंदर लग रही है।

यहाँ पर रेतीला भाग भी दिख रहा है।

जो भारत मे लगातार खत्म होता जा रहा है। एक मैदान है वहाँ --

इसमें एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है जो काफी सासज्जीत है।